यह आदमी काफी रिस्क ले के यहाँ से स्टंट कर रहा हैं ऊपर से ये रसी से टंगा हुआ हैं और पाइप के सामने बहुत--

ये शाम का समय हैं कुछ देर में सिल्वन --

ऑफिस है जो की ऑफिस के बाहर काफी सारे चेयर्स लगी हुई है अभी ऑफिस खुलने का टाइम नहीं हुआ है नहीं तो अभी तक--

इसको कोई मछली कहते है।

अभी जो डेकोरेशन किया हुआ हैं अभी टाइम नहीं हुआ हैं यहां पे टाइम होगा तो आएगा।

एक कोचिंग क्लास हैं यहा पे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से--

वह हैं आमने-सामने कुछ पेड़ हैं पीछे टावर्स लगी हुई हैं।

जो की काफी रईसी होटल हैं इसमें काफी सारे लोग आते हैं घूमने के लिए--

एक जो हैं एक गाडी हैं जो गाडी खराब हो गया हैं गाडी खराब होने के कारण एक व्यक्ति--